इस तस्वीर में एक ट्रैक्टर दिख रहा है।

ये सोफा इतना बड़ा है कि यहां में तीन इंसान भी बैठ सकता है।

ये तस्वीर एक सैलून की अंदर की है।

उपर के रेलिंग सस सफेद रंग के है और उसके नीचे पीले और काले रंग के निशान हैं।

इस तस्वीर पर पहाड़ियां दिख रही हैं।

सामने एक बड़ा मैदान है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

बैकग्राउ में भी फर्नीचर और डेकोरेशन आइटम है।

यह एक बड़ा सा घर है।

दुकान में एक टेबल फैन भी है।

बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग है जो हल्की ब्लू रंग की है।

ये मंदिर पेड़ो से घिरा हुआ है।

सोने का मंदिर चमक रहा है।

दोनों आदमी कैजुअल कपड़े पेहने हुए हैं।

यह कमरा साफ सुथरा दिख रहा है।

जमीन पर ईंटो का फर्श बना हुआ है।

दीवारें लकड़ी या बांस से बनी हुई हैं।